अ ईसा मसीह का मंदिर दिखाई दे रहा है यहां बच्चे आदमी और--

और बहोत बड़ा दरवाजा भी लग्या हुआ--

यहां बहुत सारे ऑटो गाड़ियां बस --

और यहां बहोत सारी भीड़ लगी हुई है।